घर पे ही दोनों साइड रखा गया है समझ में नहीं आ रहा है कि लकड़ी सा साँचा कुछ बना रखा गया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में रखा गया है इस हल में।

के नीचे बहुत ही झाड़ उगी है इधर साइड में देख सकते हैं कचरा फेका गया है इधर घास फुस है।

पीला कलर लाल कलर हरा कलर बैगनी कलर सभी कलर के फू फूल यहाँ पे मौजूद हैं|

समानों को अच्छे से अच्छे तरीके से रखा गया है।

नीचे तारों को बिछा रहे हैं सरिया को लगा रहे हैं उसमें अब सीमेंट डालेंगे |

ये जगह बहुत ही साफ़-सुथरी और सुंदर लग रही है आकाश भी साया है।